तैयाली जैसे काफी बड़ा हॉल है। यहाँ पर ऐ भाई लोग --

यहाँ पर भी बोहोत अच्छा लग रहा मेरे को देखने में ठीक है जो कि बोहोत ही अच्छी नज़रा है।

पर बहुत हरे वो है पोस्टर लगे हुए है और ये स्कूल बना हुआ है ठीक है कार आये है पांच छह और बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए है।